आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू व्हाइट कलर मे दिख रहा है कुछ बच्चे प्लेग्राउंड मे खेलते हुए दिख रहे है और कुछ बच्चे यहा पर इधर-उधर सामने दिख रहे है ब्लू --

बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा है बिल्डिंग के सामने कुछ पोस्टर वगेरह लगे हुए दिख रहे है जो रेड कलर मे दिख रहे है ऊपर जो व्हाइट कलर मे लिखा हुआ दिख रहा है कुछ सीढ़िया दिख रही है सामने--

काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ ग्रीन-कलर मैं दिख रहे हो कुछ यहां पर पत्तियां दिख रही हो जो कि ग्रीन-कलर कि दिख रही हो और कुछ खंबे वगैर दिख रहे उनके उपेर कुछ तर वागेर दिख रहे हैं और आसपास मैं कुछ परसों जाते हुए दिख रही है एक लदिस जाती हुई दिख रही है जिसने ग्रीन-कलर कि सारी पहन राखी है निचे में कुछ मिट्टी दिख रही है और कुछ घास-से दिख रही है आसमान ।